कागज का सामान लेकर खड़ी हुई है वे सफ़ेद रंग के कपडे पहनी हुई एक महिला भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ सामने की तरफ छोटे घर नजर आ रहे हैं | वे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं | यहाँ एक सफ़ेद रंग का --

छत पर बहुत सारे बल्ब लगे हुए है।

यहाँ कोई धार्मिक स्थल दिखया गया है यहाँ का गेट खुला हुआ है वे एक व्यक्ति सामने की तरफ खड़ा है।

आखरी छोर पर घना जंगल दिखाई दे रहा है | समुन्दर के किनारे पर एक बोट खड़ी हुई है व दो बोट पानी --